एक बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा है उसके निचे घर है और उसके नीचे पेड़ पौधा है और घांस है।

बड़ा सा बादल दिखाई दे रहा है नीला आसमान है और कुछ चट्टान है।

एक एक ऑफिस मे तीन वर्कर दिख रहा है और बड़ा सा दरवाजा है और नीचे टाईल्स लगा हुआ है।

और फॅक्टरी के अंदर एक अगरबत्ती जलते हुए दिख रहा है और एक मोमबत्ती दिख रहा है।

और ये कुछ ब्रिज बन रहा है और कुछ लोहे का सेट लगा हुआ है।

इस तस्वीर मे तीन घर दिख रहा है।

और एक पिल्लर खड़ा हुआ है बड़ासा। और कुच बादल है।

और एक इन्सान बैठा है और एक बडा सा रोड है।

ये एक मंदिर है और कुछ फोर बना हुआ है और दो इंसान है।